रेड कलर का दिखाई दे रहा है इधर से की ये मशीन वो मुझे ब्लैक और वाइट और रेड कलर की दिखाई दे रही है।

ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है येलो कलर दिखाई दे रहा है और जहां पर मुझे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहा है जहां पर एक जाले लगीं हुई है वो ग्रीन कल --

और उसमें मिट्टी दुबा हो कुछ पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं और जहां पर गण मन मुझे--

यहां चद्दर का घर बना हुआ है और ये दीवार पे मुझे येलो --

और एक मकान दिख रहा है उसके ऊपर मुझे पिंक दिख रहा है उसके नीचे मुझे व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है मकान के सामने मुझे बड़े बड़े पेड़ दिख रहा है।

और यहां पर मुझे पांडाल लग रहा है एक पर्दा का कवर है।

यहां पर मुझे मैदान दिख रहा है मैदान में मुझे कुछ लोग एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रहा है।

और किसी ने रेड कलर के पहने हुए हैं। यहां पर एक मकान दिख रहा है वह वाइट कलर का है। उसकी खिड़कियां देखनी है ब्लू कलर की है। ये इन्होंने वाइट कलर की जूते--

एक लाल सिल्वर दिख रहा है एक ग्रीन दिख रहा है और नीचे कार रखी हुई है सिल्वर कलर की एक वाइट कलर की कार रखी हुई है और जहां पर --

और यहां पर पेड़ पौधे हैं और सिल्वर कलर का यहां पर छत दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे एक बड़ी सी बस दिखाई दे रही है बस का कलर मुझे सिल्वर कलर दिख रहा है और एक लोग उसके अंदर--

ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं दो लोग उधर खड़े हुए हैं गेट के पास--

कलर का दिखाई दे रहा है यहां पर मुझे जंगल दिख रहा है जंगल में वो जाना चाह रही है।

ये नीले कलर का चै दीवाल पुत रही है एक इधर पर्दा है वो वाइट ब्राउन कलर का है।

कुछ इधर सामान भी रखा हुआ है नीचे मुझे फर्श से सिल्वर कलर का दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे बड़ी बड़ी चट्टानें दिखाई दे रही है और जहां पर मुझे--

वो मुझे ग्रीन कलर दिखाई दे रहे हैं उसकी खिड़कियां कांच मुझे सिल्वर कलर दिखाई दे रहे हैं नीचे बोहोत--

गोल्डन कलर की दिखाई दे रही है यहां पर एक मशीन रखी हुई है वो मशीन मुझे--

और जहां पर मुझे येल्लो कलर दिखाई दे रहा है और जहां पर पहाड़ी है पेड़ पोधै भी दिखाई दे र--

कलर के दिखाई दे रही है यहां पर मुझे नीचे कुछ आसन या चटाई वगैरा पन्नी में रखी हुई देख रही है यहां बॉक्स रखा हुआ है।